यहाँ पे बहोत सारे व्यक्ति भी दिख रहे हैं और यहां पे रेड कलर का दो पोस्टर भी दिख रहा है।

एक चोंगा भी दिख रहा है सामने में एक छोटा सा स्टॉल भी लगा हुआ है।

यहां पे एक व्यक्ति बिठा बैठा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

बड़े टेबल पे भी दो डब्बे रखे हुए दिख रहे हैं।

चमन परास वगैरह के डब्बे भी दिख रहे हैं।

यहां पे झंडे भी लगे दिख रहे है और फूल भी सजाया गया है।

सामने में एक होटल का चित्र दिख रहा है जहां पे साई राम भोजनालय लिखा हुआ है।

सामने में फ्रीजर भी दिख रहा है जिसमें कोकोकोला लिखा हुआ है।

यहां पे एक साइकल भी दिख रही है और एक बाइक भी दिख रही है यहां पे एक बड़ा सा गेट भी दिख रहा है।

यहां पे दो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं जिसके बगल में एक गार्डन भी दिख रहा है।

जोकि ऑटो में इक तराजू है यहां पे बहुत सारे सामान और भी रखे दिख रहे हैं।

और यहां पे एक बैनर भी लगा हुआ है।

यहां पे बहोत सारी लाइटें भी लगाई गई है।

ए पिलोज भी दिख रहे हैं और यहां पे एक टेबल में पौधे के गमला भी रखा हुआ है।

यहां पे बहोत सारे पौधे के गमले भी लगे हुए हैं।

इसके बगल में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे फिचकारी दिख रहे हैं बंदूक वाले भी फिचकारी दिख रहे हैं और बोतल वाले भी।

और उसके बगल में एक वाइट कलर की स्कूटी भी दिख रही है।

यहां पे कारपेट भी बिछाए गए है।

यहां पे एक लोटी भी दिख रहा है और एक घंटी भी रखा हुआ है।

ये एक सड़क लग रही है जहां पे ये दो बड़े खंभे दिख रहे हैं।